और बच्चे देख लीजिए गीली मट्टी में कैसे पौधे लगा रहे हैं और आसपास देख लीजिए हमें बिल्डिंग भी नजर आ रही है जो की काफी प्यारी --

और मोहन का ढाबा भी है और एक पंजाब नेशनल बैंक भी है जोकि सभी शॉप्स बंद है आप खुद देख सकते हैं यहां पे --

मेन रोड के जस्ट पास हमें एक शॉप भी नजर आ रही हो और उसके पीछे पिंक कलर की बिल्डिंग जो हमें दिखाई दे रही है।

यहां पे हमे एक मूर्ति दिखाई जा रही है उसे फूलों से डेकोरेट किया गया है और सब --

यहां देख लीजिए हमें एक रूम दिखाई दे रहा है जो की बहोत बड़ा है इसमें काफी सारी एक्सरसाइजेज मशीज मशीन हमें दिखाई दे रही है।

पार्लर है और आप सामने देख सकते है कितना छोटा सा और कितना प्यारा है जिसके साथ साथ सोफा और --

सामने हमें बहोत ही प्यारी जगह दिखाई दे रही है जिसमें की छोटे छोटे से पेड़ पौधे के संग बड़े बड़े पेड़ भी हमें नजर आ रहे हैं।